और अंदर में एक दिल रखा हुआ है।

रस्ता का किनारो में ड्रेनेज सिस्टम है और साइड में सब डिवीजन दो ठो रस्ता दिखाई दे रहा है।

दरवाजा का सामने में बॉल्स प्लास्टिक बॉल लटका के रखा है।

बिस्तर व्हाइट कलर का है।

माला का सामने एक टॉवेल रखा हुआ है ग्रीन और रेड और वाइट कलर का।

बहोत सारा पेर दिखाई दे रहा है।